यहाँ पर एक तराजू भी रखी गई हुई है जिससे मछली को तौलकर दिया जाता है| मछली में कितना वेट है वो भी पता चल जाता है| और एक बोतल रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है| एक नींबू रखा हुआ है।

यह एक बुक स्टोल है| यहाँ पर स्टूडेंट बुक खरीदने आते हैं और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है| अलग-अलग प्रकार के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं जो की एक बुक स्टोल पर बुक खरीदने आए हुए हैं।

अंकल जी ने नीले कलर की शर्ट पहनी है| शर्ट में व्हाइट कलर की बटन लगी हुई है| पीछे की ओर बहुत सारी बुक रखी हुई है।

सामने की ओर एक नीले कलर की बहुत बड़ी बुक रखी हुई है| पीछे लाइट जल रहा हुआ है प्रकाश दिखाई दे रहा है| रेको में बहुत सारी बुकस रखी हुई हैं| अंकल जी बहुत स्माइल देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बस है बस में काफी सवारी दिखाई दे रही हैं| बस के नीचे की ओर काफी सवारी हैं| बस के ऊपर बहुत सारी सवारी बैठी हुई हैं शायद यह एक बस स्टैन्ड या बस स्टॉप है।

उनके साइड में छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है| मिरर में दोनों की फोटो दिखाई दे रही हैं।

लोग पीछे की ओर चेयर पे बैठे हुए हैं| कुछ लोग अलग दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं| यह है एक नोटिस करने वाली बात--

काफी लोग यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी भीड़ हैं शायद यह कुछ एक अच्छी जगह दिखाई दे रही हैं ब्रिज का पानी बहुत तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा हैं बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं।

तो एक भैया अपने बच्चे को लेकर घुमाने लाए हैं| दोनों पानी मे खड़े हैं दोनों के पैर पानी मे डूबे हुए हैं| भैया ने रेड कलर की टी-शर्ट और व्हाइट कलर की पैन्ट पहनी हुई है| बिम्ब ओवर ब्रिज का पिलर दिखाई दे रहा है।

यह एक ब्रिज है| यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई है साइकिल पर बहुत सारा समान रखा हुआ है| भैया है भैया ने साइकिल को पकड़े हुए खड़े है।

यह एक बस स्टैन्ड हो सकता है| भईया लोग तीनों अलग-अलग अपने हिसाब से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।